घर का सामने बहुत सारा पेड़ पौधा नजर आ रहा है।

सामने में सूखा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

सामने में टेबल भी नजर आ रहा है इस पिक्चर पे।

सामने में ब्रॉन्हम और तृप्तिग भी दिखाई दे रहा है।

सामने में पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा है।

मिट्टी में बहोत सारा ग्रीन ग्रास दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमें एक जंगल दिखाई दे रहा है।

जंगल का अंदर में इंसान भी दिखाई दे रहा है।

सामने में एक बड़ा घर दिखाई दे रहा है।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

दुकान के अंदर में बहुत सारे डस्टबिन भी नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में हमें पार्किंग जगह दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमे एक मूर्ति जैसा दिखाई दे रहा है।

घर भी दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में --

सामने में एक कार व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है।

अंदर बहुत सारा मैगी दिखाई दे रहा--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

लोहा गेट भी दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में।

जंगल में घर दिखाई दे रहा है रिजॉर्ट जैसा।

का पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

मिट्टी में ग्रीन ग्रास भी नजर आ रहा है।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

इस पिक्चर पे हमे एक घर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें फेंसिंग दिखाई दे रहा है।

वॉल में चीता कार्टून बना के भी नजर आ रहा है इस पिक्चर में हमें।

कमरे में बहुत सारा गाड़ी भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में।

बहुत सारा फूल दिखाई दे रहा है मंदिर का सामने में--

बहुत सारा मूर्ति भी नजर आ रहा है।

पेड़ लोग का छाया भी दिखाई दे रहा है इस पिक्चर का अंदर।

पिक्चर पर हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है।

वह फेंसिंग भी दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में --

कार्टून भी दिखाई दे रहा है कार्टून का समने प्लास्टिक बैग भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक बड़ा नदी दिखाई दे रहा है।

सामने में बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहा है।

सामने मे फेवीक्विक गम भी नजर आ रहा--

घर का सामने बहुत सारा पेड़ पौधा भी नजर आ रहा है।

अंदर में बहुत सारे इंसान भी दिखाई दे रहा हैं।

जिम का इक्विपमेंट नजर आ रहा है।

भी दिखाई दे रहा है जिम के अंदर में।

बच्चे लोग का कपड़ा भी दिखाई दे रहा है दुकान का अंदर में।

सामने में प्लास्टिक भी नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में हमे एक मेला दिखाई दे रहा है।

रिंग से पानी गिरके भी दिखाई दे रहा है।